यहां पर बहोत सारा पानी दिखाई दे रहा है।

और यहां पर भगवान की बहोत सारी मूर्तियां दिखाई दे रही हैं शिवजी की मूर्ति भी दिखाई दे रही--

और यहां पर कांच का काउंटर भी दिखाई दे रहा है।

यह एक शॉप दिखाई दे रही है और यहां पर बहोत बड़ा ब्लॉक भी--

दिखाई दे रहा है ब्लॉक में बहुत--

बच्चे का सर भी दिखाई दे रहा--

यहाँ पर बहोत बड़ा मैदान दिखाई दे रहा हैं और एक साइकिल दिखाई दे रहीं हैं।

छत भी दिखाई दे रही है और यहां पर फर्श भी दिखाई दे रहा है।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

बिजली के तारे भी दिखाई दे रही है और आसमान भी दिखाई दे रहा है।

यहां पर बहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

और एक मंदिर भी दिखाई दे रहा है।

यहां पर बहोत सारा पानी दिखाई दे--